hydrogen bonding in molecules पर स्पोकन tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे avogadro configure करना
अणुओं में hydrogen bonding दिखाना
hydrogen बांड्स की लम्बाई नापना
अणुओं में force display type और dipole moments दिखाना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu लिनक्स os version 1404
avogadro version 111 और एक कार्यरत internet connection
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको avogadro interface से पारिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित tutorials के लिए हमारी website पर जाएँ
आपके लिए इस tutorial में प्रयोग की गयीं संरचनायें code files की तरह दी गयीं हैं
मैंने एक नयी avogadroविंडो खोली है
draw toolआइकन पर click करें और फिर panelपर click करें
methane panelपर आ जाता है
अब हम avogadroको configure करना सीखेंगे
settingsमेनू पर जाएँ और configure avogadroपर click करें
settingsडायलॉग box आता है
dialog box में एक side menu है जिसमें और तीन menu items हैं
default रूप से generalमेनू ही चुना जाता है
generalमेनू में दो sliders हैं: qualityऔर fog
आप जैसे ही slider को lowसे highकी तरफ खींचतें हैं तब rendering कि गुणवत्ता बढ़ जाती है
qualityस्लाइडर को low पर लायें और applyआइकन पर click करें
ध्यान दें कि संरचना ठीक प्रकार से रेंडर नहीं हुई है
qualityस्लाइडर को high पर लायें और applyआइकन पर click करें
ध्यान दें कि उच्च गुणवत्ता की rendering से अणु ज्यादा चमकदार प्रतीत होते हैं
images प्रकाशित करने और प्रिंट करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली rendering set की जाती है
ये ज्यादा cpu power व्यय करता है
quality slider को medium पर लायें और applyपर click करें
सामान्य रूप से देखने के लिए मध्यम गुणवत्ता की setting ठीक काम करती है
अब fog slider
fogस्लाइडर को lotsपर लायें और applyपर click करें
ध्यान दें कि संरचना धुंधली या अस्पष्ट हो गयी है
fogस्लाइडर को someपर लायें और applyपर click करें संरचना स्पष्ट दिखाई देती है
अब pluginsमेनू
display types drop downs दिखाई देते हैं
ध्यान दें की सारे check boxes सक्रिय हैं
axesपर click करें axes display typeके बारे में विवरण detailsटेक्स्ट box में प्रदर्शित है
इसी तरह आप अन्य display typesका विवरण देख सकते हैं
मैं सारे check boxes अनचेक करुँगी और applyबटन पर click करुँगी
display typesमेनू में अकेला ball and stickचेक box ही दिखाई देता है
ball and stick display typeचेकबॉक्स को अनचेक करें
यदि ball and stickभी अक्रिय है तो अणु panelसे गायब हो जाते हैं
display को सक्रिय करने के लिए ball and stickचेक box पर click करें
सभी display typesको सक्रिय करने के लिए pluginsपर जाएँ
display typesड्राप down में सारे check boxes पर click करें
applyबटन पर click करें
display typesड्राप down में सारे display typesप्रदर्शित हैं
settingsडायलोग box को बंद करने के लिए okपर click करें
यदि display typesमेनू में से कोई display typesसक्रिय नही होता है: addबटन पर click करें
add display typeडायलोग box प्रदर्शित होता है
typesड्राप down पर click करें और अपनी जरुरत का display typeचुनें
मैं hydrogen bondचुनुगीं और okपर click करुँगी
hydrogen bond display type display types menu में प्रदर्शित होता है
अब मैं polar methanolमें hydrogen bonding दिखाउंगी
हमारे पास panelपर एक methane अणु है
दर्शाने के लिए मुझे methaneअणुओं के एक समूह की जरुरत है
methaneअणुओं को बनाने का एक आसान तरीका draw toolउपयोग करना है
default रूप से draw settingsमेनू में element carbonकी तरह और bond ordersingleकी तरह है
panel पर click करें
element drop down पर click करें और oxygen चुनें
फिर methane अणुओं की किसी भी एक hydrogens पर click करें
अब हमारे पास panel पर methanol अणुओं का एक समूह है
display typesमें hydrogen bond check box पर click करें
अणुओं को सही दिशा के लिए optimize करते हैं
tool bar पर auto optimization tool को click करें
बायीं तरफ auto optimization settingsमेनू प्रकट होता है
force field drop down में mmff94चुनें
करने के लिए startबटन पर click करें
आप hydrogenबॉन्ड का बनना पीली dashed रेखाओं की तरह dashed सकते हैं
ये रेखाएं एक अणु की hydrogenऔर दूसरे की oxygenके बीच बनती हैं
auto optimizationबंद करने के लिए stop पर click करें
मैं अब orthonitrophenolमें इंट्रा मॉलिक्यूलर hydrogen bonding दर्शाऊँगी
इसके लिए मैं chemical structure database से अणु निकालूँगी
पहले खुली हुई windows को बंद करें और एक नयी windows खोलें
file menu पर click करके import पर जाएँ fetch by chemical name पर click करें
chemical name text box दिखता है
छोटे अक्षर में orthonitrophenol type करें और ok button पर click करें
orthonitrophenol अणु panel पर दिखता है
hydrogen bonding दिखाने के लिए आपको panel पर orthonitrophenol अणुओं के group की ज़रुरत है
मैंने panel पर अणुओं को copied और pasted कर दिया है
selection tool उपयोग करके अणु चुनें
copy के लिए ctrl + c और paste के लिए ctrl + v दबाएं
hydrogen bond check box पर click करें
यदि आवश्यक हो तो उचित orientation के लिए अणुओं को optimize करें
ऑप्टिमाइज़ेशन प्रक्रिया के दौरान अणुओं में intraमॉलिक्यूलर hydrogen bond बनता है
अणु में nitro group के oxygen और hydrogen group के hydrogen के बीच hydrogen bond बनता है
अब hydrogen bond की लम्बाई नापते हैं
tool bar पर click to measure icon पर click करें
hydrogen परमाणु और oxygen परमाणु पर click करें
panel पर नीचे hydrogen bond की लम्बाई दिखती है
यह slide hydrogen bonding का महत्व दिखाती है
hydrogen bondswater की अद्वितीय solvent विलायक क्षमता निर्धारित और बर्फ़ की crystal संरचना को स्थिर करते हैं
एक साथ dna के अतिरिक्त strands को रखते हैं
proteins और nucleic acids की संरचनाओं को निर्धारित और स्थिर करते हैं
enzyme catalysis की क्रियाविधि में शामिल होते हैं
assignment में निम्न में hydrogen bonding दिखाएं
आपका assignments इस प्रकार दिखना चाहिए
निम्न में inter hydrogen bonding देखें: parahydroxybenzoic acid अणुओं में तथा adenine और uracil अणुओं में
अणुओं के लिए force दिखाने हेतु हमारे पास display types में विकल्प हैं
कुछ water अणुओं के साथ मैं एक नयी window खोलती हूँ
display types में force check box पर click करें
hydrogen bond check box पर click करें
tool bar में auto optimization tool icon पर click करें
mmff94 force field चुनें start button पर click करें
ऑप्टिमाइज़ेशन प्रक्रिया के दौरान: force display type हरे arrows के साथ प्रत्येक परमाणु पर force दिखाता है
arrows दिशा और force की मात्रा दिखाते हैं
जब एक अणु ऑप्टिमाइज़ेशन के करीब होता है तो arrows छोटे हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं
अब अणु में dipole moment के लिए
dipole momentपोलर अणुओं में charge विभाजन के कारण होता है
dipole moment μ = charge q times distance of separation r
dipole moment की units debye होती है
अब मैं hydrogen cyanide और water अणुओं में dipole moment दिखाऊँगी
एक नयी window खोलें
hydrogen चुनें और carbon पर एक bond बनाएं
nitrogen चुनें bond order को triple चुनें और प्रदर्शित की तरह bond बनाएं
mmff94 force field उपयोग करके संरचना को optimize करें
dipole moment दिखाने के लिए display types में dipole check box पर click करें
dipole एक लाल रंग के arrow से दिखता है
अनुमानित dipole moment दिखाने के लिए view menu पर जाएँ
properties पर जाएँ और molecule properties चुनें
window hydrogen cyanide का अनुमानित dipole मूमेंट0396d दिखाती है
उसी प्रकार water का अनुमानित dipole मूमेंट0245d है
सारांश में
इस tutorial में हमने सीखा
methanol में इंटरमॉलिक्यूलर hydrogen bonding दिखाना
orthonitrophenol में इंट्रामॉलिक्यूलर hydrogen bonding दिखाना
hydrogen bonds की लम्बाई नापना
water अणुओं में force display type दिखाना
हाइड्रोजन साइनाइड और water अणुओं में dipole moments दिखाना
assignment में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
हम spoken tutorials उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट जया द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद